पेन रखे हैं बहुत सारे पेन हैं।

मोबाइल मे नेट स्विच डाटा चलता है वो टावर से ही चलता है ।

पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो टोटो है।

और अच्छी बात है लड़कियाँ सबसे आगे ही होती हैं।

यहाँ मीटिंग हो रही है जै बहुत सारी मीटिंग होती है।

यहां पीटर इंग्लैंड की दुकान है। जहां लड़के लोग का ड्रेस मिलता है जैसे शर्ट पेंट जींस ब्रांड का मिलता है एंड ये सब जगह होती है। अच्छा दुकान है।

यह किराना स्टोर है जहाँ किरान का समान मिलता है जैसे शैंपू हो गए रखे हुए हैं और --